यहाँ पर कुछ टेबल रखे हुए हैं कुछ खिड़किया भी है और कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है।

अंदर फुल बगेरा है। और कुछ बाहर मेला सा लगा हुआ है। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं।

एक बोहोत बड़ी मछली की दुकान है मार्केट है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं। ब्लू कलर की घर की बोत्तले भी रखी हुई हैं। कुछ कुर्सियां भी हैं।